जिसके अंदर व्यक्ति बैठे है एंड कुछ एक्सरसाइज कर रहे है और उसके पास में बहुत बड़े पेड़ पौधे है।